बहोत अच्छा गार्डन हैं रास्ते हैं बहोत प्रकार के गार्डन होंगे। हरा-हरा गार्डन है।

बकरी है। दो बकरी इधर उधर घूम रही है। लम्बा-लम्बा पेड़ है है बकरी वाइट कलर की है एक ब्लैक कलर एक वाइट कलर की हैं एक वाइट कलर पर ब्लैक कलर है उसका एक ब्राउन कलर की हैं।